जोकि सीढ़ीओ के बाजु पे लोहे की ग्रिल रखी हुई है उस पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

बड़े-बड़े से भी लोहे के नठ रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इनके पैर मुझे बहोत बड़े-बड़े नजर आ रहे है।

पीछे पे मुझे बहोत बड़े-बड़े से पेड़ भी नजर आ रहे है।

यह बहोत ही सुन्दर और सास्तर इस तरीके से बहोत ही क्लैरिटी से बनी हुई दिखाई दे रही हैं ।

यहाँ पर मुझे बहोत सारे लोग भीड़ लगाए इकट्ठा दिखाई दे रहे है।

पीछे में मुझे ए.सी चलती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे बहोत ही सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इस मसिन के साथ एक आदमी ने चेक चेकस वाली शर्ट पहनी भी हुई है।

पीछे साइड में मुझे कुछ विंडो टाइप की नजर आती हुई दिखाई दे रही है जिसे ऊजा--